यहां एक लाल रंग की मैट बिछी हुई भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो मा एक बेंच पा बहुत सारी मशीनें रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में काफी बड़ा एक मैदान नजर आ रहा है।

इस फोटो में कुछ कैफे जैसा एक बनी जो है दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक मेज और कई सारी कुर्सियां पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां बहुत से लोग खरीददारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

एक सफेद रंग की मेज रखी हुई भी नजर आ रही है।

पीछे की तरफ काफी सारी छोटे पौधे व कई बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कैफे की बहार फूलों से हुई सजावट भी दिखाई दे रही है।

के किनारे बहोत सारे घास फूस फूल के पौधे व कई बड़े बड़े हरे रंग के पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक पेट्रोल टंकी दिखाई दे रही है यहां कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ आमने तरफ लोहे की बनें गेट भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ कई सारे रंग बिरंगी फूल से बनी मालाओं से सजावट की हुई भी दिखाई दे रही है।

और खूब सारे गमले रखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

अथी यहां पे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई भी दिखाई दे रही है।

जोकि काफी सारी रंग बिरंगी रंगों से बनी हुई हैं।

एक दीवार सफेद रंग बा एक दीवार लाल रंग की दिखाई दे रही है।

एक दीवाल पर ए_सी लगी हुई भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में दोइ लोग कुर्सी पे बैठ के कुछ खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक मेज पर दो ग्लास एक बॉटल व दो कटोरियाँ और दो सीसी और रखी नजर आ रही हैं।

स्टूल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा मंदिर बना हुआ भी दि --

इस फोटो में पेट्रोल टंकी दिखाई दे रही है जहां दो तीन लोग खड़े होकर पेट्रोल भरवाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मा एक मकान की छत का निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है।

वह एक सफेद रंग का बड़ा पाइप पड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक इमारत दिखाई दे रही है जो कि लाल व सफेद रंग से पेंट की हुई दिखाई दे रही है।